बहोत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।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

एक लाल रंग का जाली वाला दरवाजा दिखाई दे रहा है एक तरफ पेड़ लगा है जिसमें गुलाबी फूल हैं।

और एक प्लेग्राउंड नजर आ रहा है।

सैनिक साइकिल मोड का बोर्ड लगा हुआ है।

जिसके किनारे बहुत सारी बोर्ड नजर आ रही हैं।

जिसके किनारे बहोत सारी कार खड़ी है।

इस चित्र में एक छज्जा बन रहा है।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

नगद जमा नगद निगासी का बैनर लगा है।

जिसमें बहुत सारे फ्लैट बनाए गए हैं।

इस चित्र में एक बाउंड्री दिखाई दे रही है जो कि सीमेंट की है।

इस चित्र में हमें एक रोड दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर हमें कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

कुछ लोग नजर आ रहे हैं यह रात का समय है।

उसके नीचे दस्तरखान रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक मंडप दिखाई दे रहा है।

बोट पर लिखा है ब्रह्मपुत्र पार्किंग --

एक बैटरी वाला ऑटो खड़ा है जिसका रंग पीला है।

इस चित्र में हमें जू दिखाई दे रहा है।

हमें यहाँ पर ट्रैफिक लाइट दिख रही है सामने एक मंच लगा है जिस पर विविध कला विकास समिति लिखा है।

जिसमें काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं एक नदी दिख रही है हल्की सी--

और यहां पर एक तरफ से पानी बह रहा--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

इस चित्र में एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।